कई पप् पटरी में ट्रेन नहीं खड़ी है लेकिन एक पटरी पे मालगाड़ी ट्रेन नजर आ र --

इस तस्वीर में हमें बोहोत -सी लड़कियाँ और औरतें नजर आ रही हैं जोकि योगा कर रही हैं और यहाँ एक बिल्डिंग है जहाँ पे दो छोटे‌-छोटे पंखे लगे हुए है।

इस तस्वीर में हमें बहुत से मुसलमान भाई नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक एस.बी.आई. का ए.टी.एम. नज़र आ रहा है जिसके बाहर बहोत सी तस्वीर भी चिपकी हुई हैं और गेट का रंग काला है।

इस तस्वीर में हमें तीन गाड़ियाॅं खड़ी हुई नजर आ रही हैं जिनमें की एक स्कूटी और एक एस्ट्रा कार भी नजर आ रही है।

एक में बॉल और यहां पे प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है।